इस तस्वीर में एक कैफे नजर आ--

यह तस्वीर आर्मी पब्लिक स्कूल की है।

इस तस्वीर में पोस्ट ऑफिस नजर--

ऑरेंज कलर के वस्त्र धारण किए हुए--